वह येलो कलर की है रेड कलर से पैस्ट्री केस लिखा हुआ केक --

नीचे एक जाली दिख रही है लोहे की और कुछ लेडीज है और एक लड़का खड़ा हुआ है कुछ बच्चे है।

इस पिक्चर मे एक बिल्डिंग दिख रही है और उस पे व्हाइट कलर का ओर रेड से कलर का पैंट है ओर एक बो डार्क ब्लू कलर का एक बोर्ड लगा हुआ है एक बॉक्स बना है।

पिक्चर में एक स्टेज दिख रही है जहां पर दूल्हा दुल्हन दिख रहे है दूल्हे का मुकुट दिख रहा है और यहां पर एक लड़का खड़ा जो टोपी लगाए हुए है।

कुछ बिल्डिंगे दिख रही है जिनपे लाइटे लगी हुई है येलो कलर व्हाइट कलर पर्पल कलर और ग्रीन कलर की एक लड़की खड़ी हुई है यहा पे और पीछे भी कुछ ल ल अ जेन्स और लेडिस है।

एक लड़का और है जो व्हाइट कलर की शर्ट पहने हुए है और पर्दा लगा हुआ है येलो कलर का और रोज की डेकोरेशन की गयी है रोज लगे हुए है।

पिक्चर मे एक शॉप दिख रही है जिसका येलो कलर का पेंट है रेड कलर से वहां चंचला लिखा हुआ है।